दे रहले बिजली के खंभा देखाय दे रहले ह बहुत्ते सारा बिल्डिंग दिखाय दे रहले हा।

जैसन की हम देख पा रहे यहां दीवाल है दिवला पर पीला कलर से पेट करके अग्रवाल --

एगो रोड दिखाई दे रहले है जेता एगो बाइक है बाइक पर एगो आदमी है काला कलर --

के शर्ट पहन ले है देवला के आगे बहुत सारा बोर्डल रख है कुछ पलाई रख है।

लेपटॉप रखल हैके पीछे एगो पोस्टर लगल हेके एइजा तीनगो आदमी है एगो आदमीया --

एइजा पड़ी दूगो बेंच है एगो टूल है एगो कुर्सी टेबल लगल है जेकरा पड़ी एगो आदमी ब --

पीछे एगो खजूर के घरा के आगे बहुत सारा बाइक --

जैसन कि हम देख पा रह लिए है ई ऊ दवाई की दुकान है अजा पर एक टी_वी --

यहाँ सोफा लगल है।

कलश बहुत सारा फल रख ले वो प्लास्टिक --

तो वो बाइक अलग अलग के हैं यह ब्लैक कलर के हैं रात के टाइम --

जैसन के हम देख पा रह लिए है ये ऊ बैड रूम है बैड रूमम पर दो तकियां रखल है जो--

ये काली मिली झलक हैं लेकर बाये साये कुछ फूल अलग अलग हैं --

फूल से डेकुरेट कर लिगे है ऐसटेचवा के ऊपर में शादी हो रह लिए है एक वो लरका है जो पीले कलर का कुर्ता पहन लिए--

पेनले है लड़की है जलाल कलर के सारी पहनले है --

घर है। घर में काफी सारा--

यहां लाइट लगा ला है कई घरा के आगे में काफी अच्‍छा सा डेकुरेशन कर लगाया बहुत अच्‍छे से सारा कुर्सी टेबल रख ला--

जैसा कि हम देख पा रहे यहा ये वो कपड़ा की दुकान है एकरा में बहुत सारा कपड़ा है।

जैसन कि हम देख पा रहिली हा इ मेरेज हॉल है जेकरा काफी अच्छा से डेकोरेट केल गले ह बहुते सारा बैलुन है बहोत --

यहां एगो लड़की है जो पीला कलर के ड्रेस पेहनी है एजा पर बहोत सारा आदमी है रात के टाइम है।

एने सब बच्चा पेंटिंग बना रहले ह पीछे बहुत ही सारा लाइट जल रहले ह ।

तेज है एक वो फोन पर के बाग डोर ल लगा रखा है पीछे में वो पैनल लगा ला है जखरा पर कुछ लिखा ला है।

ते सारा लाल कलर की कुर्सी रखा लगा है पीछे में एक वो चाट रखा ला है जो ब्‍लू कलर के है ये जो--

हाइदे रहले सामने एक ऊ सी_सी_टी_वी कैमरा दिखााई दे रहले है और सिन्‍टरवा पेंट कलहै ऊ पीला कलर से है।

जैसन के हम देख पा रह लिए है ये एक ऊ रोड है रोडों पर बहुतत सारा आदमी है बहुत सारा गाड़ी--